इस तस्वीर में मुझे कुछ जूते दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ पर्दे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर मे मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक दरवाजा दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे कुछ सोफे दिखाइए दे रहे हैं।

यहां मुझे एक सूरज दिखाई दे रहा--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

यहां मुझे एक ऐ_सी दिखाई दे रहा--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

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं।

में मुझे भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।